एहाँ बहुत सुंदर है गाड़ी-घोड़ा सब है और यहाँ घर भी यहाँ दिख रहा हैऔर ह हरा भी ठीक है।

यह एक जिम है और यहाँ बहुत सुंदर नजारा है और यहाँ घ घर इ चेयर कुर्सी और सब है यहाँ सब का नजारा एकदम सही है पंखा कूलर ए.सी. लाइट उइट सब हैं।

और यहाँ बहुत सुंदर नजारा है और यहाँ जिम और जिम में ए एक्सरसाइज कर रहे हैं आउ अपना पतला होने के लिए--

ई बालू का फैक्ट्री है बनता है यहाँ बालू यहाँ सीमेंट जाता है यहाँ से अउ ईटा बन के जाता है एदम मस्त मिल जैसे है जैसे मिल नहीं चलता है मस्त बालू रहता है इसीलिए यहाँ पर बालू बहुत जमा है और ये बच्चे लोग खेल रहे हैं और मस्त --

मस्त एदम पौधा -वोधा सब लगा है यहाँ पास एकम जूता- ऊता पहन के जा रहा है एदम मस्त एदम लगता हैं कुछ एकदम अमीर घर का लड़का है लगता हैं।

और हा या हैपी बर्थडे का न्यू ईयर कर रहे है और सब कुछ बैग ओग लेकर आए हैं और सब कुछ और सब कुछ इंतजाम है यहाँ केक -ऊक पानी -ओनी सब कुछ है फुल्की चार्ट हैं।

यहाँ ल लड़की लोग एक्ससाइज रहे हैं और डांस करने का आ आ प्रैक्टिस कर रहे हैं सब कुछ है यहाँ नजारा देखिए लाल- ओल और सब कुछ पहने हैं हरा -ओरा पेंट ओंट सब कुछ नया और सब कोई देखिए मोती का --